रोड पे यात्री इसमें यात्रा के लिए जा रहें हैं | एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जो ए पीला और सारे कावड़ लेके कावड़ यात्रा के लिए जा रहें है पीछे एक माइक दिख रही है इलेक्ट्रिकल तार है।

जिसमें इलेक्ट्रिकल बॉल लगे हुए हैं। सामने घर है कोई इलेकजंक्शन सा दिख रहा है ये। सामने घर --

ग्रीन कलर का गार्डन दिख रहा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं।